ये एक हॉस्पिटल का दश्य है जिस पे एक नर्स और डॉ--

ये एक रूम है रूम पे कुछ बेड है बेड पे तकिए पड़े है और चद्दर भी पड़ा--

कुर्सियां पड़ी है और बीच में एक टेबल पड़ा है टेबल पे कुछ चीजे पड़ी हैं और --

किला है किले के पास एक बहुत बड़ा तालाब है।

एक एम_आई मोबाइल की दुकान है ऊपर सैमसंग का बोर्ड लगा हुआ है।

स्विमिंग पूल के बाहर लेडिस और आदमी खड़े हैं और छोटा बच्चा कुर्सी पे खड़ा है और दो अन्दर नहा रे है। पीछे एक बहुत बड़ा घर है।